यहां पे एटीन नाइंटी सिक्स से लेके नाइंटी सेवन तक का दिया हुआ है।

एक घर है जो कि नया-नया है। अभी बन रहा है यहां पे और कुछ मजदूर है जो काम कर रहे हैं।

सामने बहुत ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ के किनारे--

बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़े दिख रही है।

और आस पास पहाड़ी मैं बहुत बड़े बड़े--

भीड़ है और यहां पे पत्थरों के बीच में सब काफी सारे लोग खड़े हैं।

सामने मैं देख पा रही हूं बहुत बड़ा कैबिन कैबिन में--

और अंदर में एक और रूम है जहां पे बिस्तर लगा हुआ है और तकिया है।